यह एक कोलेज है यह कोलेज बहुत ही बड़ा तथा बहुत ही खूबसूरत है इस कोलेज में बहुत से स्टूडेंट दूर दूर से पढ़ने के लिए आते है।

इस स्कूल में सभी प्रकार के सुविधाए के साथ यहाँ पे लाइटिंग फैन भी बहुत ही अच्छी अच्छी है।

इस पार्क में सभी प्रकार की सुविधाए उपलब्ध हैयहाँ पे बैठने पानी पीने एवं खाने की भी सुविधाए उपलब्ध कराई गई है ।

यह एक सब्जियों की दुकान है यह दूकान बहुत ही बड़ी तथा बहुत ही अनोखी है क्योंकि इस दुकान में हमे सब ताज़ी सब्जियां मिलती है ।

यहाँ पे स्टेज शो हो रहा है यह स्टेज शो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे है इस स्टेज शो में कोई लोग है जो स्टेज शो कर रहे हैं।

यहाँ पे राधा कृष्ण का सोंग पे कोई डांस कर रहा है और स्टेज बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है और स्टेज के पीछे में किसी चीज का बैनर भी लगा है।

इस पंडाल जो बहोत ही अच्छी तरह बलून से सजाया गया है।

इस जगह में बहोत सारे लोग--

यह एक कोई ऑफिस है ये ऑफिस बैंक ऑफ़ बरोद्रा का है ये ऑफिस बहुत ही बड़ी है।